दो कुर्सियां रखी हुई हैं जो कि पीले रंग की हैं एक कुर्सी पे एक आदमी बैठा नजर आ रहा है।

लकड़ी से बनी एक छत है हरे रंग की--

तस्वीर में हमें दो आदमी काम करते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पेहनी हुई है और एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है।

कुछ गुल फूल के गुलदस्ते रखे हुए हैं और कुछ डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर की छत का रंग सफेद और भूरा है।

तस्वीर में हमें एक बगीचा नजर आ रहा है।

कुछ टेबल्स नजर आ रही हैं और कुछ कुर्सियां नजर आ रही हैं।

पीछे कुछ लोग हैं जो की एक बोट में बैठे हुए हैं जिस--

यहां पे कुछ लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं और उनके पास लैपटॉप है जो कि काले रंग का है।

एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने चेक दार शर्ट पहनी हुई हैं जो--

सामने एक मंदिर है जो कि ओम के निशान से बना हुआ है।

काले रंग की टेबल्स रखी हुई हैं और अंदर कुछ लोग हैं।

तस्वीर में हमें एक स्कूल नजर आ रहा है जिसमें तीन खंभे लगे हुए हैं जो कि गुलाबी रंग के हैं।

जिनमें से कुछ सफेद रंग की है और कुछ काले रंग की हैं।

उनके ऊपर कुछ पीले रंग से डिजाइन बनी हुई है और उस कमरे में सफेद रंग की बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं बगल में--

फर्श है जो कि क्रीम कलर की है और बोर्ड्स लगे हुए हैं जो कि लाल रंग के हैं।

तस्वीर में एक गाय दिख रही है जिसका रंग काला है।

ये तीन कारें खड़ी हुई हैं जिसमें से दो कारों का रंग सफेद है और एक कार का रंग भूरा है।

एक मेज है जिसके ऊपर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है।

हमें एक मूर्ति दिखाई दे रही है जिसके ऊपर उन्होंने क पीले रंग के कपड़े पहनाए हुए हैं।

कुछ लोग हैं जो की सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

पीछे एक कुआं बना हुआ है और उसके पीछे दो औरतों की तस्वीरें बनी हुई हैं।

टायर रखा हुआ है जो कि काले रंग का है और कुछ शीशे दिखाई दे रहे हैं जो की लगे हुए हैं और--

पीछे की दीवार है जो पीले रंग की है जिसके ऊपर बहुत सारे खिलौने सजे हुए नजर आ रहे हैं।

तस्वीर में हमें एक गेट दिखाई दे रहा है जो की जालीदार है और काले रंग का है।

दरवाजा दिखाई दे रहा है जो की सफेद रंग का है और ऊपर एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

दो इंसान खड़े हुए है जोकि लाल रंग की टोपी लगाए हुए हैं।

छोटा सा टेबल दिखाई दे रहा है जोकि काले और भूरे रंग का है।

नीचे एक बोर्ड लगा है ओ_पी_डी का जोकि रेड कलर से लिखा हुआ--

एक पत्थर है जोकि सफेद रंग का है उसके बगल में हरे रंग की एक बॉल और पड़ी हुई है।

तस्वीर में हमें एक फूल दिखाई दे रहा है जो कि लाल और सफेद रंग का है।

सफेद रंग का खंबा भी है और नीचे हरि रंग की घास लगी हुई है।

जिसपे बहोत सारी किताबें रखी हुई है।